इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही पुराना इमारत है।

और चारो तरफ सिर्फ पेड़ ही दिख रहे है कुछ छोटे कुछ बड़े और कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

और उनके ऊपर उनके प्राइजो का पोस्टर भी लगा हुआ है।

और उसने अपना पंख फैलाया हुआ है

जिसका आगे का बोनेट खुला हुआ है।

पोज़ ले कर बैठा हुआ है जिसने पिंक शर्ट और ब्लू जीन्स पेहनी हुई है।

जिसके चेयर पे एक लड़का बैठा हुआ है जिसने अपना हेयर स्टाइल करवाया है।

जिसके ऊपर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।

नदी है जिसमें दूर-दूर तक सिर्फ नदी और कुछ छोटे-छोटे--

और उसके ऊपर एक लाइट लगा हुआ है।